पानी के बाजू में बांबू बींबू लगा है --

और यहाँ पे पंखे का कलर है ब्लैक --

यहाँ पे एक अंकल हैं उनके बाजू में स्विच है लाइट बटन का उन उसके बाजू में कपड़ा है फि--

यहाँ पे बहुत सारे लड़के लोग खड़े है यहाँ पे सात आठ दस लड़के लोग खड़े है हँस हँस के देख रहे हैं स्टोन पे काम कर एक भैया टोपी पहने है।

यह सनसेट होने आ रहा है अभी और उन उसके नीचे नदी है नदी के अंदर थोड़ा गंदा गंदा कचरा है अ--